इस तस्वीर में मुझे एक मेला दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक गमला दिखाई दे रहा हैं।

तस्वीर में मुझे एक समुद दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे ई सेवा डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर --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

इस तस्वीर में मुझे एक हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया दिखाई दे रहा है।